और बहुत सारे हरे हरे पेड़ भी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे दुकानें दिखाई दे रही है।

और उसी के आजू बाजू में एक फुटबॉल भी दिखाई दे रही है।

जिसके ऊपर एक बैनर लगा हुआ है आलिया कैफे के नाम से।

इसके आगे एक बड़ा सा पेड़ भी है।

जिसमें बहुत सारे खिड़कियां भी लगाए हुए है।

इस तस्वीर में बहोत सारे टेबल और चेयर रखे हुए हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक घर दिखाई दे रही है जिसका छत टिने से बने हुई है।

जिनमें से आधे टेबल और कुर्सी के कलर काला रंग का है।

इस तस्वीर में मुझे दो लोग दिखाई दे रही हैं।

इसमें एक ने नीला और सफेद रंग का शर्ट पहना हुआ है।

इस टेबल के ऊपर दो प्लेट भी रखे हुए हैं।

इसी घर के आसपास में बहोत सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रही है।

टेबल के ऊपर टिशूज भी रखे हुए हैं।

इस तस्वीर में मुझे दुकान दिखाई दे रही है जिसमें चार लोग खड़े हुए हैं।

जिसमें एक गुलाबी रंग का कमल दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत लोग शादी में आए हुए नजर आ रही है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत बड़ा सा एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।